मैं देख पा रहा हूं कि--

और बाउंड्री के साइड में एक कार खड़ी है।

और साइड में यह एक स्टेडियम भी है जिसमें कोई नहीं है और यहां पे--

जनसंख्या भी है और राइट साइड में केले के पौधे हैं।